भगबान बुद्ध की मूर्ति है भैया साफ सफाई बोहोत बढ़िया है लाइटिंग बोहोत अच्छा है और फर्श बोहोत बढ़िया है सब जगह साफ़ सुथरा दिखत ह।

इसमें सी लिखल बा भईया सूचना दिहल बा बोर्ड प । बिना के अंदर जाना परवेश वंचित है। आदे टिकट पर भी परवेश वंचित है।

इसका ध्यान रखे आप लोग पार्क में जाय घुमे फिरे भईया ह् बहुत सुन्दर पार्क --

बहोत सुंदर रोड बा भैया। पगडंडी टाइप क रोड बा। अगल-बगल में लाइट लगल बा। पेड़-पौधा बान।

बाजार लगल ह भइया सब ची त लगल बा फल फूल क बाजार लगल बा सब आपन रोड पर ख़दारी करत हवं और पेड पौधा बिल्डिंग के नीचे सभे रोड़े पर खरदारी अपना करत हवं लोग।